ये एक खेत का फोटो है जहां से खेत से एक कच्चा रास्ता गया हुआ है।

और रॉड का सेट-अप लगा है लोहे का।

ये एक चॉकलेट केक का फोटो है जिसमें की चॉकलेट लगी हुई है और बहुत सी चॉकलेट इसके उपर रखे हुए हैं।

अ ये एक सब्जीमंडी का फोटो है जहां पर भिंडी और गिलकी और अ शिमला मिर्च गाजर खीरा--

और नीचे ए ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई है और ये लोहे के हैंगर में सब कपड़े टंगे हुए हैं।